एक बिल्डिंग है आसपास ये एक बिल्डिंग है आसपास ग्रीन --

ये एक मोबाइल रिपेरिंग शॉप और--

कमरे कमरा भी है बहुत सारा सामान है।

और इसपे हार से सजा हुआ है स्टेज अपना--

एक सीढी ऊपर कि और जाती हुई ऊपर वो सारा सामान रखा हुआ है।

और साइड में एक टेबल भी रखी है इसके अंदर--

पोटस के बारे बड़े बड़े पेट्स के बगल में और एक आदमी बैठा हुआ है जो --

और वाईट आसमान है साफ सुथरा--

राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में एक आदमी फ्लोर पे बैठा है लेफ्ट साइड आदमी फोन चला रहा है।

दादेही इसमें कुछ बहुत बोर्ड वाला हैं।

ये एक होटल है अं होटल गेटवे कर्नाटक पार्किंग नोट है नीचे--

ये एक तरह का पार्क लग रहा है।

पिंक कलर का और ब्लैक कलर का ड्रेस पहने हुए लेडी है इस साइड में --

एक तरह का रेसिंग कोर्ड लग रहा है।

कुछ गेंदे के इसमें सायद एक रोज भी है।

ये एक हनुमान जी की झाकी लग रही है कुछ लोगो की झाकी इतनी सुंदर सजाई गयी है केलो के पेड़ो से।

एक आदमी मोबाइल पर वीडियो बना रहा है जाकी कि--

और चोकोर में गोल में शेप में तरह तरह डिजाइन के--

एक सोनोग्राफी मशीन लग रही है उसके अंदर है ।

तरह तरह का पैटस फ़ूड भी है।

कप्स टीशर्ट वगेरा पेराऊ दिखा जाता है सायद--

टीम की तैयारी कर रहे होंगे आसमान भी बहोत खुला एंड साफ है व्यू बहोत अच्छा लग रहा है खुली धूप है।

चर्च मंदिर सा लग रहा है देखने में एक आदमी बाहर को आ रहा है।

ये एक जे_सी_बी क्रेन हैं साइड में एक आदमी खड़ा हैं जे_सी_बी के--

खुली धुप है आसमान खुला हुआ है परछाई बहत --

पिंक कलर किन्तु सजाया गया है कुछ पर्पल बोलस लगाये है कुड्सियो पर कुड्सिया भी बहोत अच्छी सजाई है।